इस तस्वीर पे हमे एक बिना प्लस्तर का बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जिसका गेट बहुत ही बड़ा है

जो अपनी बॉडी को दिखा रहा है उस-उसका सिक्स पैक है एक शख्स पीछे खड़ी हुई नीली टी-शर्ट में दिखाई दे रही है। इस रूम में एक फैन लगी हुई दिखाई दे रही है।